है और पत्थर-पत्थर नज़र आ रहा है पेड़-पेड़ नज़र आ रहा है साइड साइड पर--

यह एक मूर्ति है और बहोत ही पुराना ऊपर मिट्टी पाटा गया है और ऐ गाव का पृतिकरा तालाब है जैसे लग रहा है।

यह एक पेड़ पोधा है और अ ऐसा लग रहा है की पीछे साइड अ-नदी है और पहाड है और इधर पेड़ पोधे है और इधरी से पानी जा रहा है जैसे --

यह एक पार्क है और एक टेबल है और बहुत बड़ा पेड़ है बहुत बड़ा-बड़ा छाव करने के लिए सुबह का टाइम है।

और पीछे देखी सकते हो औ चित्रण का कलाकार करा गया है आदिवासी लोगो का और बोंडरी भी करवाया गया है और साथ मे पेड है।

ये उतर राज्य जिला भवन है यह बिलासपुर में है और ये कार्यालय है और गेट वेट लगा है।